लगे हुए हैं जो की देखने में बहोत खूबसूरत लग रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट है जोकि अपने फैमिली के साथ हम लोग जा सकते हैं खाना खा सकते हैं बैठ के अच्छी तरह--

कच्ची सड़क है और यहां दो औरतें--

यह एक ऑफिस है जो की देखने में बहोत अच्छा लगा व्हाइट कलर की ए_सी लगी हुई है।

येह भी खूबसूरत लग रहा है जैसे--

ये बड़ा सा ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर में एक बच्चा है और बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।